यहां एक बाउंड्री की हुई दीवार दिख रही है।

ट्यूबलाइट लगी हुई है यहां एक टेबल दिख रहा है और एक कुर्सी है।